बहोत-बहोत बड़ा प्लेग्राउंड ग्राउन्ड दिख रहा है। पीछे जाली दिखाई दे रहा है।

और एक स्लायडिंग छोटी स्लायडिंग है पीछे की काली सी बिल्डिंग है।

सामने ही रखा एक यु.पी.आई कोड रखा हुआ है।

जैसे कि हम देख सकते हैं ये जगन्नाथ जी की जैसी यात्रा निकलती है वैसी कोई यात्रा निकल रही है।

और चपू दिखाई दे रहा है।

ये भैया ऑरेंज कलर और ग्रीन कलर का कपड़े पेहने हुए हैं। एक लेडिस है जो सफ़ेद कलर के कपड़े पेहने अपने आप को पूरी तरह ढके हुए है।

पिंक कलर की और लाइट यल्लो कलर की दो तिन बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंगे न्यू कंस्ट्रक्सन में बनी हुई हे।